सामने बाहर रोड पे गाड़ी खड़ी हुईं हैं और सामने दो औरते इख रही हैं जो साड़ी पहनी है। एक आदमी गाड़ी पे बैठा हुआ दिख रहा है।

सामने एक बहोत बड़ा ग्राउन्ड दिख रहा है। जहाँ पे थोड़ी - थोड़ी सी घास है और उसमें बोहोत सारे लोग दिख रहे हैं।

सामने एक फ्रूट का ठेला दिख रहा है जहाँ पे फ्रूट्स हैं। एक स्टूल है और लाल कलर की एक बकेट है और एक बाल्टी भी है।

जिसके अंदर पानी भरा हुआ है और इसमें से केले रखे हुए हैं केले टंगे हुए है।

और काले कलर का एक सामने बहोत बड़ी दीवाल दिख रही है और पिलर्स दिख रहे हैं।

सामने एक ऑफिस जैसा दिख रहा है जहा पे टेबल्स पे बहोत सारे लपटॉप्स रखे हुए हैं। लपटॉप्स ब्लैक कलर के है और वो ऑन है।

सामने कुछ लोग दिख रहे है जो खड़े है। कार खड़ी हुई है और बाइक भी पार्किंग में खड़ी हुई है।

और एक ब्रिज के नीचे का भी दिख रहा है। बिजली का खम्भा भी है। उससे बिजली के तार जुड़े हुए है और सामने बहोत सारी शॉप --

सामने एक पेट्रोल पम्प दिख रहा है। जहाँ पे दो पेट्रोल पॉइंट हैं और कुछ लोग दिख रहे हैं। पेट्रोल पम्प पे बहोत अच्छी लाइटिंग है। सामने एक खंबा भी दिख रहा है।

सामने एक रास्ता दिख रहा है जिसके बाहर कुर्सियां रखी हुई है और लोहे का शेड डला है। एक वाटर कूलर लगा हुआ है सामने एक पेड़ भी दिख रहा है और कुछ लोग बाहर बैठे हुए हैं।

सामने एक प्ले ग्राउन्ड दिख रहा है हरे कलर की घास है कुछ लोग इसपे क्रिकेट खेल रहे है।